यहां पर बैठने के लिए एक गोल्डेन कलर की चेयर भी है।

ये तस्वीर है जो ये वहां पर म् एक पिकनिक स्पोर्ट जैसे लग रही है।

इसमें बहुत सारे किसीम के बलूंस हैं और अंदर से कुछ कपड़े भी है।

ये एक तस्वीर है जो एक मंदिर की है।

वहां पर दीवाल पे भी एक पोस्टर लगाकर है।

ये एक तस्वीर है जो एक पेट्रोल पंप की है।

और वहां पर ये वुडेन के स्टिक्स भी वो ऊपर तक देकर है।

एक तस्वीर है जिसमें ये एक बिल्डिंग --